सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसने शर्ट पहन रखा है आसमानी कलर का और पेंट पहन र --

और आपेलो का एक लिखा हुआ है।

और एक व्यक्ति है जिसके गले में लॉकेट है।

मयंक ईशान और इनके नाम के प्लेट ओनली लगे हुए है और सामने --

उसके अलावा जो गुड़िया लड़कियां है उसमे से एक ने सफेद टी-शर्ट पहन रखी है नीचे --

बैठी हुई है और एक ने खाली टी-शर्त पहन रखी है सामने जाली है उसके अलावा सामने एक बिल्डिंग है।

यहाँ पर हमारे सामने कुछ व्यक्ति है जो कुछ बैठे हुए है और कुछ खड़े हुए है और एक --

और हमारे सामने के बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई है और उसका अलावा दो-तीन बर्तन और रखें हुए हैं।

गुलाबी और आसमानी कलर का और सामने एक बड़ा-सा कांच है जिसमे दो व्यक्ति --

मे सामने गाड़ी की शोरूम है जिसमे शटर है और वो लाल कलर के है दीवाल है जो लाल कलर के अंदर एक दिवाल है।